मुझे एक बरा सा स्कूल जैसा दिखाई दे रही है।

बाहर में बहोत ज्यादा आदमी लोग भी दिखाई दे रही है।

मुझे दो पुलिस भी दिखाई दे रही है।

मुझे खिड़की लूप भी दिखाई दे रही है।

मुझे ग्रीन कलर का छोटा छोटा सा घास लोग भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक घर दिखाई दे रही है उसमें बहोत ज्यादा फूल लोग भी दिखाई दे रही है।

येलो कलर का भी दिखाई दे रही है रेड कलर का भी दिखाई दे रही है सफेद कलर का भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक चार्ट्स जैसा दिखाई दे रहे --

एक औरत माइक लगाके बात करते हुए दिखाई दे रही साड़ी पहन के।

मुझे एक क्रॉस दिखाई दे रहे --

मुझे एक चेयर भी दिखाई दे रहे रेड कलर --

ब्लू कलर का दिखाई दे रही है टेबल का कवर भी।

मुझे एक इंसान का हड्डी भी दिखाई दे रही है।

मुझे बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रही है।

मुझे व्हाइट कलर का बादल भी दिखाई दे रही है।

मुझे घर का बाहर में ब्राउन कलर का गेट भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

मुझे लाइट भी दिखाई दे रहे --

मुझे एक घर बनाते हुए दिखाई दे रहे --

जे बहोत ज्यादा आदमी लोग --

मुझे रेड कलर का कारपेट भी दिखाई दे रहा है।

मुझे बहुत ज्यादा फ्लॉवर्स तो दिखाई दे रहे --

एक पिंक कलर का फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे --

मुझे रेड कलर का दो चेयर दिखाई दे रहे है।

वो गाड़ी का कलर भी सफेद कलर का दिखाई दे रहे--

मुझे ग्रीन कलर का ट्रीज दिखाई दे रहे --

मुझे तीन आदमी खड़ा होते हुए दिखाई दे रही हैं दो आदमी ने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है और एक आदमी ने ब्लैक कलर का लॉन्ग पेंट भी पहना है।

एक लड़का ने श शर्ट पहना हैं।

मुझे एक लड़का सोते हुए दिखाई दे रे--

एक सिस्टर भी सफेद कलर का कपड़ा पहन के खड़ा हो रही --

टेबल में एक गम भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक आइसक्रीम शॉप भी दिखाई दे रहे।

पत्थर में बैठके एक लड़का भी दिखाई दे रहे --

सफेद कलर का बदला भी दिखाई दे रहे --

मुझे एक बाइक भी दिखाई दे रही है ब्लैक कलर का --